आस पास में बहोत सारे घरे बिल्डिंगे के हैं पेड़ है और नीचे लोगों की बहोत ही भीड़ हो रही है आस पास ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के आस पास बहोत भीड़ है।

ऊपर एक विंडो है जो ग्रीन कलर की है और साइड में कुछ जाली की डिजाइन बनी है जहां पर ब्लू कलर का पोस्टर लगा है।

फूल लगे हुए हैं पीछे की तरफ व्हाइट पिंक ऑरेंज कलर के जो पौधे हैं और कुछ बड़े पेड़ भी हैं जो बहुत--

यहां पर एक घर है सामने जो वाइट कलर का है जिस पर ब्लैक और व्हाइट बहोत सारे पोस्टर लगे हैं सामने छोटा लोहे का गेट है।

साइड से एक रास्ता है जिसके दूसरी तरफ भी गाड़िया खड़ी है गाड़िया जा भी रही है और सामने की तरफ लाइट ऑरेंज कलर के बहोत सारे घर है पेड़ है।

और व्हाइट ट्यूब लाइट लगी हुई है और आसपास बहुत सारे खिड़की और दरवाजे हैं।

और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए लकड़ियां लगी हैं सामने की तरफ एक लोहे का कांच का सॉरी ब्लैक कलर का गेट है।

सामने से कांच का गेट लगा हुआ है जो खुला हुआ है सामने व्हाइट कलर है।

व्हाइट कलर की हैं और यहां कुछ टेबल और सामान रखा है और येलो कलर की दीवार पर एक व्हाइट --

और यहां पे कुछ व्हाइट रेड कलर का पोस्टर भी लगा है जो रेट लिस्ट का है और ऊपर व्हाइट लाइट लगी है।

यह एक व्यक्ति खड़े है जिन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है ब्लैक गॉगल लगाया हुआ है वो यहां पर फोटो शूट कर रहे हैं इनके सामने की तरफ भी कुछ लोग बैठे है।

यह बहुत ही पुराना लग रहा है पुराने समय का है जिसके कारण इसकी छत टूट गई है।

वहां से बहुत सारे लोग घूम रहे हैं आस पास बड़े पेड़ लगे हैं और चारों तरफ छोटे छोटे पौधे भी लगे अंदर की तरफ घास है।

और यह कार बहुत ही पुरानी स्थिति में है और इसे चारों तरफ से चेन से बांधा गया है और एक व्यक्ति है।

और साइड में ही एक बहोत सारा सामान भी रखा है सामने से रोड है।

कलर का है और इसके सामने बहोत सारी बाइक खड़ी है और इसे फूलों की मालाओं से सजाया गया है जिसमें येलो और ऑरेंज माला है।